यह मिठाई स्वीट्स दुक दुकान है और यहां सभी प्रकार की मिठाईयाँ मिलती है और बहुत ही सस्ते दाम मे मिलती है।

इस सड़क बहुत ही अच्छी सड़क है और इसमें गाड़ी भी बहुत ज्यादा चलती है यह हमारे महीवा से बहुत दूर तक ले जाती है मतलब जहाँ भी जाना हो वहाँ ले जा सकती है।